पैनल के पास कोई जेंट्स खड़ा हुआ है जेंट्स कुछ दे रहा है किसी को और एक साइड में भी एक आदमी खड़ा हुआ है ये एक बैंक के उपर छज्जा लगा हुआ है और छज्जे--

--थोड़ा उपर थोडा ऊँचा झुका हुआ है नीचे ढलान ज्यादा है और कुछ ऑरेंज कलर से अंदर कुछ सीढ़ी बनी हुई है दो गई हुई है और कुछ लिखा है शायद व्हाइट कलर से कनेक्शन किया गया--

--चर्च है। और वाइट कलर से उसको दिया गया है ऊपर चर्च खाली है बिल्कुल। एक मूर्तियां कहीं स्थापित की गई है।

गाड़ी का स्टोर है स्टोर है और यहाँ पर गाड़ियां सही होती है और शीशे--